सुकमा पेट्रोल पंप का नाम है ।

लगई हुई है फैक्ट्री के अन्दर और पास में एक बड़ा सारा ड्राम है ।

एक स्टॉपेज है लगाया हुआ है यहाँ पर एक बाँध बनाया हुआ है।

यह पानी भोत तेजी से बहता हुआ दिखाई दे रहा है।

बहता हुआ नज़र आ रहा है नदी के बीच में एक --

पिल्लर गाड़ रखी है इस पिल्लर के ऊपर से--

झाड़ियाँ भी है साइड में और ये हरी-हरी झाड़ियाँ है।

इस विद्यालय के बाहर खुला एरिया है खुल्ले एरिया के आस-पास--

हॉस्पिटल है जहाँ पर लोग बाग अपना--

इसके आस पास के एरिये में मट्टी और --

खम्बा खम्बा भोत ही बड़ा सारा दिखाई दे रहा है उअर --

एक पिच बना रखी है यह पिच क्रिकेट की पिच है बाईस यार्ड --

सिर लगाने की जगह भी काले रंग की है।